यहां पे पेड़आगे बहुत सारा फिर दिवार गंदा बहुत है।

यह बिल्डी ऑफिस का फीचर है जहां पेबहुत सारा पोल है जहां पे--

ये एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है. महावीर नेत्रालय महावीर आरोग्य संस्थान--

मा और गणेश जी फिर सरस्वती जी बहुत सी मूर्तियां रखी हुई है।